फोटो मे एक रोड है रोड के किनारे काफी लोग खड़े है तथा बाइके भी काफी खड़ी हो रही है।

शीशे की खिड़कियाँ भी है तथा हाउस के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो की कोट पैंट पहना हुआ है यह सफ़ेद रंग की चेयर पर बैठा है।

जगमगाती लड़ी लाइटों की रख रखी है लग रखी है तथा चारों तरफ --

मंदिर के सामने की ओर का कलर दीवार का कलर निला है और मंदिर में मूर्ति भी लगी हुई है।

इस फोटो के अंदर काफी हाई फाई बाइके खड़ी रखी है।

और ऊपर की साइड खुला आसमान हैजहाँ छोटे-छोटे बादल है।

बोर्ड भी लगा हुआ है दिवार का कलर सफ़ेद और नीले रंग का है तथा दिवार के बगल मे भी पिलर पे कुछ लिखा हुआ है और खुला आसमान दिखाई दे है।

सामने की ओर एक बहुत बड़ा शटर दिखाई दे रहा है और अंदर एक गाड़ी खड़ी है जिसका कलर सफ़ेद रंग का है।

जो की हरियाली छा रखी है तथा चारों और पेड़ घने हो रखे हैं और घेर रखा है पुरे ग्राउंड को--

इस फोटो के अंदर एक व्यक्ति टोपी पहने के बैठा हुआ है जो की जैकेट पहन रखा है हरे रंग के तथा नीचे लाल कलर के शर्ट पहन रखा है।